ओकरा उ शर्ट पहिन्ले छो उम्म गाड़ी में पता ने की की लटकल छै पहाड़ तरह छो हूंने देखे मे पीछा मे लगे छो गाछी आर --